और इस रोड पे काफी व्हीकल नज़र आ रहे है कुछ कारे नज़र आ रही है कुछ बाइक है एक ऑटो है सामने भी एक बाइक नज़र आ रही है पीछे पेड़ लगे हुए है ।

सामने एक व्हाइट कलर का गेट नजर आ रहा है बड़ा-सा जिस पर अनुग्रह मेमोरियल कॉलेज गया लिखा गया है नीचे की तरफ गेट के सामने काफी स्टूडेंट्स खड़े हुए हैं और कुछ बाइक्स भी खड़ी हुई है स्टूडेंट्स ने मुंह में मास्क लगाए हुआ है।

की तरफ कुछ मशीनें रखी हुई है जो जिम की है इसमें एक वेट लिफ्टिंग की मशीन है और एक मशीन और रखी हुई है।

सामने की तरफ एक शीशा नजर आ रहा है जहां से बाहर की बिल्डिंग नजर आ रही है सामने शीशे की क्रोसिंग में एक घर बना हुआ है नजर आ रहा है।

की तरफ एक बहुत बड़ी बिल्डिंग नजर आ रही है जिसके फर्स्ट फ्लोर पे शीशे है सेकंड फ्लोर पे भी शीशे लगे हुए है नीचे की तरफ--